इस इमेज में एक बर्तन दिखा रहा है बर्तन में कुछ मछलियां रखी हुई हैं।

और एक दूल्हा खड़ा हुआ है वरमाला लेकर और ये स्टेज के साइड देखता हुआ नज़र आ रहा है।

--और अभी बहुत सारे बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

परदे लगे हुए दिखाई दे रहे और यहाँ पर--

ऐसे इमेज में एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के अंदर लेफ्ट और राइट में छोटी-छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

रूम में लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहै हैं। यहाँ इनके टीचर्स उनको योगा सीखाते हुए दिखाई दे रहै हैं।

फैक्ट्री के गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे है और यहाँ पर स्विमिंग पूल का पानी स्काई कलर में दिखाई दे रहा है।

--और लोग अपने फोन में कुछ देखते हुए नज़र आ रहे है बाहर पोस्टर भी लगे हुए दिख रहे है।

और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक छोटी-सी बच्ची भी दिखाई दे रही हैं शॉप में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

नज़र आ रही है कोई यहाँ पे कार भी नज़र आ रही बाइक भी नज़र आ रही सड़क पर--

यहाँ पर स्टेज पे कुछ बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर झंडे दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक रस्ता दिखाई दे रहा है इसके अगल-बगल--

एक लड़का लड़की दिखाई दे रहे है और यहाँ पर एक व्यक्ति--

चश्मा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शायद डेकोरेट दिखाई दे रहा है।

अंदर कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे मकान की छत भी उप यहाँ से--

इस इमेज में एक फिसलपट्टी दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस फिसलपट्टी में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।